यह यह सफेद और गुलाबी रंग का दिख रहा है।

यहाँ पे बहोत सारी लाइटें और पंखे एसी भी लगी हुई हैं। यहां पर कुछ कैमरे भी लगे हुए हैं।

जो काले और सफेद भूरे रंग की दिख रही हैं। इसके आसपास दो-तीन मकान बने हुए हैं।

यहां पे एक सर्वे सर्वेक्षण बना हुआ है।

इसके आस पास का ग्राउंड सदियों से बना हुआ है यहाँ पे बहोत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

एक दो गाड़ी और कार खड़ी है जो सफेद और काला रंग की है यहाँ एक खंभा है जिसमें से काले रंग के तार निकले हुए हैं|

ये इस नदी के पड़ोस में दो आदमी कहीं जा रहे हैं। यहां पे एक काले रंग का तार दिख --

लगे हुए हैं। घर के बिल्कुल सामने पा बहुत सा पानी भरा हुआ है।

यहां पे दो-तीन बाइक खड़ी हुई हैं जो काले रंग की दिखाई दे रही हैं। इसके पड़ोस में एक घर बना है जो बंद पड़ा हुआ है।

यह एक घर है जो काले रंग का दिखाई दे रहा है इसका दरवाजा नीले रंग से पुता हुआ है।

इसके अंदर बहोत सारी लाइट लगी हुई हैं। इसके पड़ोस में दो-तीन गाड़ी खड़ी हैं जो काले रंग में दिखाई दे रही हैं।

यहाँ इसके पड़ोस में बहुत सारे घर हैं जो सफेद रंग के दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक खंभा लगा हुआ है। एक पाइप पड़ी है जो भूरे रंग की। यहां पर कुछ लाकड़िया भी पड़ी हुई हैं।

इसके आस पड़ोस बहोत सारे पेड़-पौधे हैं। यहां पे लाईटें भी जल रही हैं।